यहां पे बुक भी रखा हुआ है।

इक दुकान में बहोत सारा कपड़ा टांगा हुआ है।

ऊपर में बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

एक आदमी बड़ा फोन लिया है।

इस पंडाल बहोत अच्छा से सजाया गया है।

काउंटर पे एक लैपटॉप रखा हुआ है।

कुर्सियां पर लड़का लड़कियां बैठी हुई है।

और यहां पे आदमी लोग भी बहोत सारा खड़े हैं।

बैलून भी लगाया हुआ है।

इस मकान में बहुत अच्छा अच्छा लाइटें लगाई गई है।

और टावर भी दिख रहा है।